मुझे एक गेट दिखाई दे रहा है गेट काले कलर का दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक नीले कलर का बोर्ड लगा हुआ है जिसमे प्रवेश निषेध आम रस्ता नहीं है लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक दूसरे गेट से चैन फसी हुई दिखाई दे रही है अंदर एक औरत आते हुए दिखाई दे रही है दो बच्चे जाते हुए दिखाई दे रहे है दूरी पर घर दिखाई दे रहा है।

मुझे एक लड़की दिखाई दे रही है लड़की ने नीचे लोवर और ऊपर टी शर्ट पहन रखा है उसके पीछे ब्लैक कलर का पर्दा दिखाइ दे रहा है पर्दे --

उसमे नीचे अलग - अलग वराइएटी के नमकीन दिखाई दे रहे है।

स्टेज पे व्हाइट कलर का पर्दा लगा दिखाई दे रहा है जिस पे ऊपर फूल लगे दिखाई दे रही है।

मशीनों के जस्ट सामने एक एल.इ.डी. लगी हुई दिखाई दे रही है पंखे लगे दिखाई दे रहे हैं सामने एक आईना दिखाई दे रहा है एक अ एल.इ.डी बल्ब लगा दि --

एक स्विमिंग-पूल दिखाई दे रहा है स्विमिंग-पूल का पानी ग्रेन कलर का दिखाई दे रहा है।

साइड मे एक खिड़की दिखाई दे रही है उपर एक ब्लैक कलर का परदे की पट्टी लगी दिखाई दे रही है और व्हाइट कलर का दीवाल --

एक माउस जलता हुआ दिखाई दे रहा है एक स्टाप्लार डला हुआ दिखाई दे रहा है एक ब्लेंक पेपर दिखाई दे रहा है और एक पेन दिखाई दे रहा है सामने एक कैलेंडर लगा दिखाई दे रहा है और काच के उस तरफ बहुत सारे आदमी --